सब पूजा निकाला हुआ है जिसमें इसका सिर्फ चक्का दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर देख कर लग रहा है।

और इसे बहोत अच्छे तरह से सजाया गया है और इसमें--

और इसमें एक फौजी दिखाई दे रहा है जो कि वहाँ पास खड़ा हुआ है।

जिसके ऊपर में लिखाया हुआ हैं।

जिसमें इसके बोर्ड में एक लिखाया हुआ है।

जिस जिसे कलर किया गया हैं जिसका रंग--

लाल नीला पीला आदि है इसके ऊपर में एक झंडा दिखाई दे रहा है जो कि लाल रंग में लहरा रहा है।

बुलखे दिखाई दे है जो कि बुलखे है उसके नीचे मे बहुत सारे डिज़ाइन किए गये है।

डीलक्स रूम और एक सी_सी_टी_वि कैमरा दिखाई दे रहा है।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

स्टडी स्टूडेंट हेल्थ एंड फैमिली वेल केयर --